हमने दिखता है इसमें कुछ और --

यह एक मछली की दूकान है जहा पे इस सब आदमी मछली बेच रहे है और एक पीछे औरत मछली भी बेच रही है |

और इधर एक बाल्टी है बोतल है।

यह के.जी.एन सहन जन सेवा केंद्र के नाम पे चलाया --

लाइब्रेरी दो दुसरे चार मंजिले मकान में है।

यह एक जिला परिवहन कार्यालय पूर्णिया का फ़ोटो है।

नदी के साइड में पहाड़ है बहोत बड़ा।

और जंगल के बीचो बीच रास्ता है ।